लिबर ऑफिस calc में images प्रविष्ट करने पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे:
document में एक image चित्र file प्रविष्ट करना
उदाहरणस्वरुपjpeg png या bmp
यहाँ हम उबंटू लिनक्स वर्ज़न 1004 और लिबर ऑफिस suite version 334 का इस्तेमाल कर रहे हैं
spreadsheet में images को ऐसे जोड़ सकते हैं image file सीधे प्रविष्ट करके graphics program से clipboard की मदद से या gallery से
हम इन सबकी विस्तार में चर्चा करेंगे
अपनी personalfinancetracker ods spreadsheet फाइल खोलते हैं
सबसे पहले sheet 2 चुनें
हम इन शीट्स में images को प्रविष्ट करेंगे
यह एक अच्छी आदत है कि पहले cell चुनें और फिर इमेजेस को प्रविष्ट करें
यदि आपके computer में image पहले से ही संचित है आप इसे सबसे पहले insert पर क्लिक करके
और फिर picture और from file से चुनकर प्रविष्ट कर सकते हैं
अब उस image को खोजें जिसे आप प्रविष्ट करना चाहते हैं
मैंने पहले से ही desktop पर images named folder में कुछ images का संचय किया है
अतः मैं image1 चुनूँगा
हम location field में image का name देखेंगे
open button पर click करें
ध्यान दें कि image spreadsheet पर प्रदर्शित होती है
इसे लिंक करके एक और इमेज जोड़ते हैं
पहले एक नया cell चुनें
अब insert और picture पर click करें और from file चुनें दूसरी image चुनें
अब image 2 पर click करें
image को अपने document पर link करने के लिए link ऑप्शन check करें और open पर click करें
dialog box जो प्रदर्शित होता है keep link button पर click करें
इमेज अब file में linked हो गयी है
linking
जब हम एक file को link करते हैं: सबसे पहले यह spreadsheet का आकार कम करता है जब यह सेव होती है
चूँकि हमारे spreadsheet में image नहीं है
दूसरा यह उपयोगकर्ता को दोनों files में अलग से परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है
image file में कोई भी किया गया बदलाव spreadsheet में linked image पर प्रदर्शित होगा
image 2 का रंग बदलते हैं जोकि greyscale के लिए file से linked है
मैं इस इमेज का सम्पादन करने के लिए इमेज सम्पादक gimp का इस्तेमाल कर रहा हूँ
आप अपनी machine पर संस्थापित कोई भी सम्पादक इस्तेमाल कर सकते हैं
सबसे पहले personalfinancetracker ods सेव करें और बंद करें
फिर images folder में जाएँ
image 2 चुनें
अब दायाँclick करें और open with gimp चुनें
image 2 gimp में खुलती है
अब इमेज को color से greyscale में बदलें
अब image को सेव करें और बंद करें
personalfinancetracker ods खोलें
image 2 अब greyscale में प्रदर्शित होती है
हालाँकि file को लिंक करने का एक बहुत बड़ा नुक्सान है कि जब भी आप इस spreadsheet को दूसरे computer या उपयोगकर्ता को भेजते हैं
आपको दोनों भेजने पड़ेंगे spreadsheet और साथसाथ image फाइल
जिसका मतलब है कि आपको हमेशा स्थान पता रखना होगा जहाँ आप दोनों files संचित कर रहे हैं
image को spreadsheet के दायीं तरफ खिसकाते हैं
spreadsheet में images प्रविष्ट करने का एक और तरीका है folder से ड्रैग करके
जहाँ आपने image संचित की है और उसे अपनी spreadsheet में ड्रॉप करें
image को drag और drop करें
अब image file को अपने spreadsheet में सीधा drag और drop करें जहाँ आप रखना चाहते हैं
आप देखेंगे कि image आपके document में प्रविष्ट हो गयी है
ctrl और z दबाकर इस बदलाव को अन्डू करें
अब image को drag और drop तरीके से link करें
यह भी काफी सरल है! केवल control और shift कीज़ को दबाकर पकड़े रहें
जब spreadsheet में image ड्रैग कर रहे हों
image file अब document से linked हो गयी है
इस calc file को ctrl और s कीज़ को एकसाथ दबाकर सेव करें
अब इस file को बंद करें
अब folder पर जाएँ जहाँ image स्थित है
image 3 jpg image को image4 jpg नाम दें जिसे हमने file में प्रविष्ट किया है
अब personal finance tracker ods file फिर से खोलें
आप देखते हैं कि linked image अब प्रदर्शित नहीं है
linked path एक error दिखाता है
इस link को डिलीट करें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
calc sheet में link के रूप में एक image प्रविष्ट करें इसे सेव और बंद करें
अब folder में जाएँ जहाँ image संचित है और image को डिलीट करें
खोलें और देखें यदि image अभी भी calc file में प्रदर्शित है
अब image को वापस image folder में paste करें
जाँचें यदि image calc file में प्रदर्शित है
standard toolbar के बिलकुल नीचे एक नये toolbar पर ध्यान दें
यह picture toolbar है
picture toolbar के सबसे ऊपर बायीं तरफ filter button image के रूप को बदलने के अनेक options प्रदान करता है
ctrl और z दबाकर इसे अन्डू करें
graphics mode button में image को grayscale blackandwhite या watermark में बदलने के options होते हैं
picture toolbar में और अन्य options हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे
आगे हम सीखेंगे कि एक clipboard से image कैसे प्रविष्ट करें
clipboard में संचित images को आप एक लिबर ऑफिस spreadsheet से दूसरे में copy कर सकते हैं
एक नई spreadsheet बनाएँ और उसे abc ods name दें
यह हमारा target document है
हमारे पास हमारी personalfinancetracker ods file में पहले से ही एक image है
यह हमारा source document है
अब source file से image को चुनें जिसे copied करना है
image को copy करने के लिए ctrl और c कीज़ को एक साथ दबाएँ
image अब clipboard पर सेव हो गयी है
abc target document पर जाएँ जोकि abc ods है
स्थान चुनें जहाँ आप अपने सेव किये हुए image को abc ods में रखना चाहते हैं
अब document में image प्रविष्ट करने के लिए ctrl और v कीज़ एक साथ दबाएँ
हम देखते हैं कि image हमारे target file में प्रविष्ट हो गयी है
अब हम सीखेंगे कि calc gallery से images को सीधे कैसे प्रविष्ट करें
galleryमें image और साथ ही ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें अपने spreadsheet में प्रविष्ट कर सकते हैं
देखते हैं यह कैसे करें
standard toolbar में gallery icon पर click करें
वैकल्पिक रूप से menu bar में tools option पर click करें और फिर इसे खोलने के लिए gallery पर click करें
अब gallery जो image प्रदान करता है उनमें जाएँ और उस image पर click करें जिसे आप अपने document में प्रविष्ट करना चाहते हैं
gallery से image drag करें और spreadsheet मे जहाँ आप प्रविष्ट करना चाहते हैं वहाँ drop करें
आप देखते हैं कि image हमारे personalfinancetracker ods file में प्रविष्ट हो गयी है
इसी के साथ हम libreoffice calc पर इस spoken tutorial के अंत पर आ चुके हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसेकई सरे अलगअलग तरीकों से एक image file को spreadsheet में प्रविष्ट करें
जैसे एक file से clipboard से या gallery से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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact @spoken hyphen tutorial dot org पर संपर्क करें